पहाड़ से कुछ पानीयां नीचे गिर रही है।

एक बड़ा सब फील्ड टाइप के है।

उसके बगल में एक लाल रंग का कुर्सी है वहां पर एक पौधा है।

और उसके पास एक लेडिस बैठी हुई है बहुत सारे लोग उधर रास्ता पर चल रहे हैं।

और एक खेत है पत्ती का रंग हरा है कुछ पत्तियों का रंग पीला है।

छोटे छोटे पौधे दिखाया जा रहा है और ये किसी चीज़ का सब्ज़ी का खेत है।

बहुत सारे लोग रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं एक व्यक्ति रेलवे क्रॉसिंग पर हिट रहा है।

एक बहुत सब बड़ा सा हाल है हाल में एक मंच लगाया हुआ है मंच के पीछे एक पोस्टर लगाया हुआ है।

झोला में कुछ कंबल दिखाई दे रहा है कुछ शीशा उसका।